जिसका दरवाजा हरे रंग का है।

इस तस्वीर के अंदर मुझको हरी घास दिखाई दे रही है।

मोर दिखाई दे रहा है सफेद रंग का जिसमें--

जो कि हरा कारपेट दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर एक वाइट कारपट --

इसमें मुझे गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें हरी हुई घांस लगी है।

खाना लगा हुआ है टेबल में ट्र के अंदर--

पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है पहाड़ भी दिख रहा है।

मुझे लाल दीवार नजर आ रही है इसके ऊपर गुंबद बना है हरे रंग का उसमें कुछ नक्कारी करी गई है।

जो कि सफेद रंग का दिखाई दे रहा है उसके गुंबज पे --

इस तस्वीर के अंदर मुझको ऑटो दिखाई दे रहा है लोडिंग --

लाल शर्ट में भी एक आदमी खड़ा हुआ है उसके थोड़े ही आगे एक चेयर पे कोई बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने नीली जींस अ पीली शर्ट पहनी है उसके बगल में एक सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने आ--

एक ऑरेंज पोल भी दिखाई दे रहा है अंदर भी पेड़ लगे हुए हैं।

खिड़की नजर आ रही है पंखे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर के अंदर एक दुकान नजर आ रही है जिस पे खूब सारे--

उसी के ठीक सामने एक सफेद शर्ट में आदमी खड़ा हुआ है ।

मुझको सफेद कलर का दीवार दिख रही है जिस पे खूब सारी खिड़कियां बनी हुई हैं लाल कलर का --

उसके पास पेड़ है पेड़ के पास में आसमान है ऊपर।

इसके साथ भी एक दूसरे मैनेगन पे लहंगा है।